बहुत अच्छा लोकेशन है --

यहां पे आप देख सकते हो आप यहां पे ये --

ये आप देख सकते हैं यहां पे मछलियां मछली पड़ी हुई है छोटी बड़ी सारी तरह की मछलियां पड़ी हुई है ये हरे रंग की मछली है आप देख सकते हो यहां पे--

यहां पे कुछ नहीं आता जाता है आप देख सकते हों एक खंडर उस चीज को बोलते है जहां कुछ नहीं आता जाता कोई नहीं रहता।

देखने में बहोत ही अजीब सा लग रहा है ये कच्चा नीचे कच्चा ही ऊपर पीली टोका बना हुआ देख रहे हो आप इइ --

यहां पे अह सन दो हजार बाइस लिखा हुआ है यहां पे आप देख सकते हो एक आदमी है।